यहाँ पर एक यूनियन बैंक है बैंक के सामने पाँच छे लोग खड़े हुए हैं एक आदमी बैठा हुआ है बैंक की सीढ़ियो पर ए --

यहाँ पर तबला रखे हुए है एक कैसियो रख हुआ है एक आदमी कैसियो को बजा रहा है एक तबले को बजा रहा है।

खड़े हुए हैं ऐसा लग रहा है ये लोग मैच खेलने की तैयारी में हैं यहाँ पर वॉलीबॉल मैच खेला जाएगा।

यहां पर नीला पानी दिख रहा है शायद ये बहुत बड़ी झील --